ओके बर्फी दिख रही है स्पंजी वाले रसगुल्ले चॉकलेट वाली बर्फी।

और ट्रेडमिल दिख रहे हैं यहां पे हमें एक दो तीन ट्रेड मिल हैं।

जैसे कि मैं देख पा रही हूं हनुमान जी का मंदिर है यह रंग भी हमारे हनुमान जी को बड़ा प्रिय है।

दो स्कूल में बैठे हुए बच्चे कुछ अपनी बालकोंनी कॉलोनी से देख रहे--

ये रेत के पहाड़ पे से ऊपर से नीचे की ओर आ रही है।

पा रही हूं आधी बिल्डिंग बन गई है आधी बन रही है।

ग्रीन ब्लू और क्रीम मैरून --

लोग भी बैठे हुए यहां पर ना--